हमें यहां बहोत ही प्यारी और बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही हैं।

हमें यहां एक सैलोन का चित्र दिखाया--

और हमें यहाँ साइड में एक रोड भी दिखाई दे--

हमें यहां पर काफी सारे लोग दिखा--